ये चित्र एक शादी का नजर आ रहा है जहाँ दो महिलाएँ दो तीन पुरष दिख रहे है ऊपर की ओर फूलो से सजाया गया है लाईटे जल रही है।

चर्च के उ पीछे प्लस का साइन बना है। ऊपर लाइट जल रही है।

भगवान के काफी सारे गेंदे के फूल टंगे हैं गले में।

लाल रंग के बोर्ड लिखे लगे है जिनपे बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है कार्यालय का--